और उसके क्रु मेंबर्स उस फ्लाइट के बारे में कुछ चेकअप कर रहे हैं यह फोटो शायद देख रहे हैं कि कॉविड नाईनटिन किसे लगे हैं जिसमें मास्क भी वेयर कर हैं।

और उनका प्रॉपर ड्रेसिंग किया हुआ है ताकि उसको आईडेंटिफाई किया जा सके और यह बहुत ही अच्छी--